और अब मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो भी हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर बाइकें खड़ी दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है और गेट दिखाई दे रहा है जो कि कत्थई कलर का--

की शोप दिखाई दे रहा है शॉप में हमें एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रही है और हमें उसके छत पे एक बहुत ही बड़ा पंखा दिखाई दे रहा हैं और दीवार का कलर हमें कथा नजर आ रही हैं।

--पर एक बहोत ही बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा हैं पेड़ का कलर हमे हरा नज़र आ रहा हैं और हमें यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रहा हैं ऑटो का कलर हमें काला दिखाई दे रहा हैं और हमें यहाँ पर एक बहोत ही लंबी सड़क दिखाई दे रही हैं जो कि बहोत दूर तक जाती हुई नज़र आ रही हैं।

और हमे यहाँ पर एक बहोत सारी दुकाने दिखाई दे रही है दुकानों का कलर हमे कत्था दिखाई दे रहा है और वहाँ पे बहोत सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है और हमे यहाँ पर एक लड़का --

ऊपर एक बहुत ही बड़ी खूब बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर हमें बहुत सारे कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं बिल्डिंग में हमें बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है खिड़कियों में खिड़कियों के पास हमें बहुत सारे दरवाजे नजर आ हैं।

मास्क पहना हुवा नज़र आ रहा है और यहाँ पे सर के ऊपर कपड़ा लगाया हुवा दिखाई दे रहा हैऔर हमे यहाँ पर हमे बहुत सारा बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें की बहुत सारे पाइप लगे हुवे दिखाई दे रहे है बहुत सारे लाइट नज़र आ रही है जो की बहुत अच्छ लग रहा है।

जिसने की लाल कलर के कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि सफेद कलर के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं और हमें यहां पे बहुत सारी कुर्सी--

ऊपर बहुत सारे भूखे दिखाई दे रहे हैंभुखो का कलर हमें नीला और सफेद दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि पीले कलर का टी -शर्ट पहने दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर बहुत सारे फ़ुग्गे दिखाई दे रहे हैं जो की पिंक कलर का भी नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ए_टी_एम की मशीन नजर आ रही है और हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जोकि हरे कलर का नजर आ रहा है और हमें उसके ऊपर टीन का सेट दिखाई दे रहा है।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

-- बोहत ही बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में हमें बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है पानी का कलर हमें काला दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर एक बोट दिखाई दे रही हैये बोट का कलर हमें नीला दिखाई दे रहा--